ये डेली ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी है।

ये एक किसी समुंदर के जैसा लग रहा है यहां पर थोड़े से पेड़ पौधे हैं समुंदर दिख रहा है।

यहां पर जैसे कि लोग आते है यहां पर बैट बॉल वगैरा खेलने।

मेरे को टेबल चेयर टेबल्स चेयर्स भी दिख रहा हैं स्टूल है बैठने का।

ये कई स्कूलों में एग्जिबिशन लगते हैं ना--

किसी फर्नीचर की शॉप है यहां पर दिखाया गया है जैसे की--

और नहाते दिख रहे हैं नहाने को जा रहे हैं लॉकर है वहां पे लाकर बना हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है सी_सी आप सी_सी_टी_व्ही भी लगा सी_सी_टी_वी कैमरे की निगरानी में है।

हमें फुटबॉल की शॉप्स लग रही है मेरे को यहां पे।

ये फुटबॉल और ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ हैं? आगे समझ में नहीं आ रहा मुझे।